हॉल की छत पे सफ़ेद कलर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के कोलम भी लाल कलर के है।

ट्रैक मे कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे कुछ झाड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग क्रीम कलर की दिखाई दे रही है।

पक्षी कुछ सफेद कलर के कुछ काले कलर के दिखाई दे रहे है।

और कुछ फूल भी दिखाई दे रहे--

एक सफेद कलर की चेयर दिखाई दे रही है।

खाली जगह पे लाल और सफेद गट्टू लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

तालाब के साइड में कुछ बड़े पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे--

और एक धर्मिल मे पानी डालके कुछ सब्जी रखी हुई दिखाई दे रही है।